सामने एक गाड़ी का शो रूम दिखाई दे रहा है ऊपर कुछ टायर्स रखे दिखाई दे रहे है बाहर एक बाइक स्टेंड करके खड़ी दिखाई दे रही है।

सामने एक विद्यालय नजर आ रही है| विद्यालय के बाहर कुछ बाइक रखी दिखाई दे रही हैं। पेड़ नजर आ रहे हैं। सामने एक सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है।

खिड़कियां नजर आ रही है सामने एक पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।